सीलिंग में लाइट बल्ब लगाया--

बिल्डिंग मे बहोत ज्यादा दरवाजा और खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

कैफेटेरिया के नीचे एक पोस्टर लगाया हुआ है पोस्टर के सामने हरा रंग का कपड़ा लगाया हुआ है और हरा रंग का बिछाया हुआ है।

सीढ़ी पर बहुत ज्यादा फ्लावर पॉट लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पिक्चर में पहाड़ और आसमान भी दिखाई दे रहे हैं।

एह फोटो में हमें एक बाजार दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा आदमी दिखाई दे रहा है।

फोटो में हमको एक रूम दिखाई दे रहा है।

दीवार का रंग हरा लगाया हुआ है।

फोटो में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है।

कमरे में बहुत ज्यादा परदा लगाया हुआ है और दीवार पर--

सीलिंग में बहुत ज्यादा सफेद रंग का लाइट बल्ब लगाया हुआ है।

यहां पर लाइन से बहुत सारा बुक्स भी रखा हुआ है।

दुकान में लाइट बल्ब और ट्यूब लाइट लगा हुआ है।

दुकान के नीचे थर्माकोल और बेंच भी रखा हुआ है।

मूर्ति के पीछे में एक बहुत ज्यादा मोर पंख भी लगाया हुआ है जिसका रंग है काला मूर्ति का रंग नीला है।

आगे मे एक स्टेज भी दिख रहा है जहां पर एक बड़ा सा बैनर भी लगाया हुआ है और --

फोटो में हमको एक लकड़ी से बनाया हुआ घर दिखाई दे रहा है।

कमरे मे काला रंग का सोफा सेट और लकड़ी का बनाया हुआ चेयर और टेबल भी दिख रहा है।

पीछे में बैग पे बहुत ज्यादा फ्लॉवर रखा हुआ है पीला और लाल रंग का।

बहोत सारा सोफा सेट चेयर और टेबल भी रखा हुआ है।

ब्रिज के नीचे में दो मनुष्य भी दिखाई दे रहा है एक बच्चा और आदमी।

घर में बहोत ज्यादा खिड़कियां और दरवाजा भी दिख रहा है।

दुकान के अंदर बहुत ज्यादा आदमी दिख रहे हैं और बाहर में--